यहा पर सिर्फ छोटा-सा तम्बू गड़ा हुआ है जो की नीले कलर पी ग्रीन का है यहा पर बहोत सारे छोटे-छोटे घास-पुस लगे हुए है ।

उपर मे कांच की खिड़की लगी हुई है और उसके अंदर मे भी एक स्टेचू हैं यहा पर बहोत बड़ा-बड़ा पोस्टर लगा हुआ है।

यहा पर से सुंदर मूर्ति खड़ी है जो की बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है और उसमे रेड कलर का माला पेहना हुआ है नीचे मे और भी बहोत सारे छोटे-छोटे भगवान् दिखाई दे रहे है ।

यहाँ पर एक मकान के सामने में जाता हुआ रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ पर बहुत सारे स्टैचू जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं जो की पूरे बाउंड्री जैसा दिखाई दे रहा है।

यहाँ बस एक मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर में घंटी लगी हुई है एक खिड़की है उसमे राधा-रानी का मन्दिर जैसा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बहुत बड़ा पुल दिखाई दे रहा है जो की लोहे के पाइप से घिरा हुआ है सामने में एक खम्मा दिखाई दे रहा है।